यह जो चित्र है यह एक मूर्ति का चित्र है इस मूर् --

यह चित्र जो है यह एक मान हेल्थ फिजिकल सेंटर ए एक तरह से कह सकते है जिसमें आर्यन आरोग्य परीक्षण संसद ए लिखा हुआ --

समुद्री हॉल का चित्र है यहाँ से ये पानी फुव्वारा बन कर निकल रहा है। इसके चारो तरफ पीले रंग का लाइट लगा हुआ--

यह एक स्कूल का चित्र है जिसका नाम है न्यूटन पब्लिक स्कूल ।

ये जो चित्र है घर का चित्र है या एक मंदिर का चित्र है जहाँ पर महिलाएं हाथो में थाली लेकर जा रही है।